नदी के चारों तरफ बड़े बड़े घर और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर में पंक्तियां दिखाई पड़ रही है।

एक ने ब्लू कलर की हाफ टी शर्ट पहनी हुई है जिसके हाथ में एक ब्लेड वाला है।

कुर्सी है जिसका रंग भूरा दिखाई पड़ रहा है सामने उसके एक टेबल दिखाई पड़ रहा है।

इस दृश्य में दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें से एक ने चेक शर्ट और फुल पैंट पहनी हुई है।

ऊपर में दी ऊपर छत का रंग उजाला है जिसमें से बहुत सारी बल्ब जल रही है।

ये किसी दुकान के अंदर की फोटो है जहां पे बहुत सारी चीजें लटकाई हुई है।

किसी दुकान की फोटो है जहां पे बहुत सारे सामान रख नीचे भी रखे हुए हैं।

खिड़की दिखाई पड़ रही है खिड़की पे खिड़की का दरवाजा लगाया हुआ है उस दरवाजे का रंग उजला है।

पूरा चारों तरफ टाइल्स लगाया हुआ है टाइल्स का रंग सिल्वर है।

कुर्सी पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं कुर्सी का रंग ब्लैक है।

जिस पे तीन चार आदमी बैठे हुए हैं कुर्सी का रंग लाल और ब्लैक का मिक्स है।

सामने की ओर दो चार आदमी बैठे हुए हैं पीछे एस_बी_आई का बैनर लगाया हुआ है एक घड़ी है।

पेड़ दिखाई पर रहा है जिसके टहनी का रंग काला है पत्ते का रंग हरा है।

अंदर में कुछ व्हाइट कलर की लाइटें भी जल रही है।

इस दृश्य मे पांच बकरियां दिखाई पड़ रही हैं।

ऊपर में नकली झालर लगा नकली फूल वाले झालर लगाए गए हैं।

जिसपे कुछ सामने भी रखी हुई है अंदर में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जिसके ऊपर बहोत सारे चादर लगाए गए हैं एक बड़ा सा पंखा दिखाई पड़ रहा है।

नीचे में दो आदमी दिखाई पड़ रहे हैं जो कि पंखे की तरफ देख रहे हैं।

बहोत सारे जानवर भी दिखाई पड़ रहे हैं नदी छोटा नदी दिखाई पड़ रहा है।

नीचे कोट टांगे गए हैं एक बड़ा सा टेबल है जिसका रंग लाल है।

इसके बगल में भी एक और टेबल है उसका भी रंग उजला और ब्लैक है।

किसी कार शोरूम के अंदर की फोटो है जहां पर सामने इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसे कार दिखाई पड़ रहे है।

पीछे में दो तीन खपड़े के घर टूटे फूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

चारों गेट खुली हुई दिखाई पड़ रही है पीछे में बहुत सारे बैरियर दिखाई पड़ रहे हैं जिसके रंग ब्लू है।

जिसके नीचे नोट हमारे यहां स्कूल बैग टूरिस्ट बैग लेडीज बैग अटैची इत्यादि सभी प्रकार के बैग उपलब्ध है।

पांच छः टंकिया दिखाई पड़ रही हैं एक घर के ऊपर भी एक टंकी दिखाई पड़ रहा है।

यह किसी दुकान की अंदर की फोटो है जहां पे फ्रीजर के ऊपर दो केक रखे हुए है एक केक का रंग पिंक ब्लैक व्हाइट है तो दूसरे का रंग पीला ब्लू पिंक ग्रीन है।